ऊपर में एक बोर्ड भी लगा है जिसपे लिखा है ऑटो पार्क ।

और ये चित्र में ची-चारो साइड गच्छ दिखाई दे रही है । एक तरफ घर भी दिखाई दे रहा है और इसके आगे में बड़े-बड़े तार के गच्छ है ।